इसका वेस्ट ई का गाड़ी नंबर है वेस्ट बंगाल नंबर सिक्स वन एट बी ए फोर सेवन थ्री टू है ।

यह एक लड़का खड़ा है। ब्लैक रंग का शर्ट पहने हुए है और ये सैलून है और सैलून के ऊपर दो फैन फैन लगा हुआ है।

ये जो वाइट कलर का पेंट किया गया है। इस मस्जिद में मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं और ये वाइट कलर का है और ब्लू रंग का है।